इस तस्वीर में हरे खेत हैं। खेतों में बड़े से पेड़ भी हैं और छोटी-छोटी हरी घास भी उगी हुई है।

ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है जहाँ पर बिरयानी जो है वो प्लेट में डाली गयी है।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

उसके साथ साथ यहाँ पर भागवत गीता भी मिलती है और बच्चों के लिए पेन पेंसिल कॉपी बहोत सारी चीज मिल रही है ।

इस तस्वीर में कुछ लोग काम कर रहे हैं वो किसी बिल्डिंग का छत बना रहे हैं।

और इन बाइकों के साथ-साथ कुछ पेड़ भी हैं और एक बड़ा सा पहाड़ भी।

पानी में एक पोल लगा हुआ है। जिस पर बिजली के तारे जो हैं आर पार लगाई गई हैं। बिजली को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

दो बसेस खड़ी है जिनका मुंह उधर की तरफ मुड़ा हुआ है आसमान ब्लू कलर का है उसमें सफ़ेद बादल भी है।

और एक पब्लिक डस्टबिन भी है ताकि लोग उसको यूज़ कर सके और जितना भी कूड़ा-करकट है वो इसमें डाल सके।

इस दुकान में कुछ बिस्किट नमकीन अगरबत्ती मैगी और बहोत से मसाले रखे हुए हैं।

ये एक प्राचीन मंदिर की तस्वीर है जिसमें एक महिला पीले रंग की साड़ी में चल रही है।

जिन लोगो को इस जहाँज में चढ़कर कही जाना है वो लोग अपना-अपना सामान उठाकर इस सफ़ेद रंग के जहाँज की तरफ जा रहे हैं।